पे लिखा है अतिथि प्लेस ।

और उसमें एक हरे कलर कि पट्टीया लगी हुई है और इस घर में ।

एक छोटा घर रहा है जिसमें टीम लगी हुई है। और ये --

पुरे कपड़े भी दिख रहे है।